यहां कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं मंदिर के बाहर कुछ बाइक्स भी खड़े दिख रहे हैं।

जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं यहां कुछ का दुकान है यहां टेबल पर एक बॉटल भी रखी दिख रही है यहां कुछ--

यहां कुछ टॉयलेट क्लीनर्स भी रखे दिख रहे है यहां कुछ कॉफी भी दिख रही है।

यहां कुछ होटले भी दिख दे रही हैं यहां एक आइसक्रीम की दुकान भी दिख रहा है यहां बहुत सारे इंसान भी दिख--

ये दिख रही है यहाँ कुछ क्लिप्स भी टंगे दिख रहे है यहाँ कुछ काजलें भी टंगी दिख रही हैं यहाँ कुछ नेल --

कई बलूंस भी लगे दिख रहे हैं जिनमें से कुछ का रंग लाल और सफेद रंग का है।

रहे हैं यहां लाइटे भी जंली दिख रही हैं।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

और कुछ हरे रंग का टीशर्ट पहना हुआ है प्लेग्राउंड के पीछे बहुत सारे पेड़ और पौधे लगे हुए है।

उसका रंग ब्लू रंग का दिख रहा है कुछ लाल रंग का दिख रहा है और कुछ पीला रंग का दिख रहा है।

यहां एक घर भी दिख रहा है जो हरे रंग का दिख रहा है यह देखकर बहोत अच्छा लग रहा है।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

जिसके पीछे एक और तालाब दिख रहा है यहां कुछ पेड़ भी लगे हुए है यहां कुछ--

यहां कुछ चेयर भी लगी हुई दिख रही है यहां कुछ टेबल भी लगे हुए दिख रहे हैं।

यह झरना हरा रंग का दिख रहा है झरने के किनारे पत्थर भी है जिस पर कुछ पैकेट भी पड़े हुए हैं।